सामने हमे मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है एक यहाँ पे बौंडरी वॉल्स भी दिखाई दे रही हैं स्ट्रीट लाइटे हैं जिसमे लाइटे जल रही हैं रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है हरी घाँस की मैदान दिखाई दे रही हैं।

आस-पास हमे कुछ और भी छोटे-छोटे से बड़े-बड़े से पेड़ दिखाई दे रहें हैं पिछे हमे बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जो की इस घर को कवर कर रहा है यहाँ पे हमे छोटा सा हट दिखाई दे रहा है जिसके सामने मे--

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई गई है ये एक बैंक ब्लड या फिर एक कंपोनेंट की बिल्डिंग दिखाई गई है यहाँ हम इसके बगल में एक और बिल्डिंग देख सकते है जिसके बाहर कुछ लिखा हुआ है।